अंदर बहोत सारा इंसान दिखाई दे रहा --

बहुत सारा पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

बाटा लिखा हुआ भी दिखाई दे रहे।

इस तस्वीर पर एक लंबा सा पूल दिखाई दे रहे --

बीच में इलेक्ट्रिक पुल भी दिखाई दे रही है।

सामने बहुत सा पत्थर दिखाई दे रहा।

इस फोटो में एक सजाया हुआ रूम दिखाई दे रहा है।

दीवार पर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक होटल दिखाई दे रहा है।

अंदर में बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर में टीना लगाया हुआ दिखाई दे--

और घर के अंदर टेबल और चेयर भी दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर पर बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहे --

खुले में एक चेयर भी दिखाई दे रहे।

इस फोटो में एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है।

और घर के सामने इलेक्ट्रिक पोस्ट दिखाई दे रहे।

के ऊपर एक फूल भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने में एक लंबा सा पुल दिखाई दे रहा है।